लाइट लगे हुए हैं कुछ लोग बैठ--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

यहां पर बहोत सारे लाइट के खंबे खड़े हुए है तीन से चार कैमरे लगे हुए है कुछ लोग कार के पास--

चारों ओर कैमरे लगाए गए हैं यहां पास फर्नीचर को अच्छी तरीके से रखा गया है।

यहाँ पर बहोत सारी कार खड़ी हुई है। पेड़ लगे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर--

इस फोटो को मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं चारों ओर कैमरा लाइट दिखाई दे रही है यहां पर बहोत से लोग खड़े हुए हैं।

तीन से चार लोग यहां लकड़ी के विंडो बनाए गए हैं यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं चारों ओर कैमरे लगाए गए हैं।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

ब्रिज के ऊपर बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं चारों ओर--

क्रिकेट खेल रहे हैं साथ में यहां पास बहोत सारी गाड़ी खड़ी हुई है।